चर्च के अगल-बगल बहुत से पेड़-पौधे लगे हुए है।

स्कूल के मैदान में दो बड़ी बड़ी पीले रंग की स्कूल की बस खड़ी हुई है।

उस बोर्ड पर सफ़ेद और लाल अक्षर में दुकान का नाम लिखा हुआ है।

चर्च के आइट साइड दो बड़ी-बड़ी कांच की खिड़किया बनी हुई है।

बड़ा सा पुल बना हुआ है। पुल के नीचे बड़ी सी नदी है। नदी के किनारो पर कुछ हरी- भरी घास और बड़े-बड़े पेड़- पौधे लगे हुए हैं।

गेट के बगल में बड़े-बड़े लम्बे हरे-भरे से पेड़-पौधे लगे हुए हैं।